बाउंड्री के अंदर भी बहोत छोटे छोटे घास लगी हुई है।

यह एक मकान का दृश्य है मकान अभी बन रहा है मकान में पलस्तरा नहीं किया हुआ है।

इस मकान में बहुत सारे वर्कर लोग काम कर रहे हैं।

नीचे में ब्राउन कलर की टाइल्स लगी हुई है।

की दीवार पे भी तीन ए_सी लगी हुई है।

इस हाल में बहोत सारे महिला पुरुष हैं।

स्टेज पर दो तीन लड़कियां नृत्य कर रही हैं।

भी यहां पे बहोत सारे नीचे में वस्तुएं रखे गए हैं।

और इसके सामने भी कुछ वस्तुएं रखे गए हैं।

दुकान के काउंटर पे एक केतली रखा हुआ है।

दुकान के बाहर दो व्यक्ति भी खड़े हैं।

वहां पे भी पत्ते गिरे हुए हैं।

नदी के किनारे भी नाव दिखाई दे रहे हैं।

चारों तरफ पेड़ भी लगी हुई है।

बिल्डिंग में बहुत सारे खिड़कियां बनी हुई है।

होटल के आगे रैलिंग भी लगी हुई है।

दुकान के आगे सवेरा स्वीट होटल लिखा हुआ हैं।

हंड्री के बाहर सो प्लांट लगी हुई है।

नीचे में बहोत सारी लकड़ियों के टुकड़े भी गिरे हुए हैं।

नीचे सीमेंट का पलस्तरा किया हुआ है।

इस कमरे में बहोत सारे टायर रखे गए हैं।

वहां नीचे में सीमेंट भी रखा हुआ है।

और एक बड़ी सी कुर्सी भी रखी गई है।